एक बाइक दुकान के बाहर रखा हुआ नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि पे हमें बहुत सारे बड़े बड़े मछली नजर आ रहा है।

घर के सामने एक ड्रम रखा हुआ नजर आ रहा है।

ला आसमान भी नजर आ रहा है।

साइड पर दो गाड़ी खरा हुआ भी नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि पे हमे बरफ़ वाला जगह नजर आ रहा है।

बहुत सारे फेंसिंग बी की नजर आ रहा है।

इस छवि पे दो आदमी नजर आ रहा है।

इस छवि पे बहुत सारे गच्ची भी नजर आ रहा है।

एक दरवाजा भी बंद हुआ नजर आ रहा है।

मंदिल को पूरी तरह बहुत सारे कलरफुल लाइट बहोत सारे फूल से सजाया हुआ नजर आ रहा है।